और यहाँ पर खिलौने लगाए गए हैं शो के लिए ट्रेन जैसा जो काफी अच्छा है।

छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हैं। भालू है।